और यहां पे खंभे भी बहुत सारे लगे जिसके अंदर लाइटें लगी है ब्लैक कलर --

बहोत सारे लोग जमीन में बैठे हुए है पलेटें लेके और बहोत सारे लोग खड़े भी है।

के अंदर एक काउंटर नजर आ रहा है जो डिजाइन वाला बना हुआ है।

इसके अंदर सिग्नेचर बोर्ड लगा हुआ सामने की ओर दिख रहा है जो एक ऊपर वॉल ग्रीन कलर का लगा है और एक नीचे वॉल ।

और एकदम पीछे वॉल मकान भी दिख रहा है और लाइटे भी दिख रही हैं।

अब पीछे वाले एक वाटर कूलर रेड कलर का नजर आ रहा है जो गौर से देखने पर पता चल रहा है।

इसके अंदर जमीन में एक कुर्सी रखी है।

कुर्सी के बगल में एक कुंजी टाइप में पत्थर का कुछ रखा है।

इसके अंदर एक कार दिख रही है जो सामने की ओर खड़ी दो हेडलाइट लगी हुई है एक शीशा है।

इसके अंदर एक दीवार दिखरी है जो आधे में लोहा लगा है औ आधे में पेंट हुआ है रेड कलर औ व्हाइट कलर अ लोहा भी लाल कलर से जाली टाइप में पेंड हुआ है।

इसके अंदर छत पे वाइट कलर पूरा दिख रहा है जिसमें लाइटें लगी हुई हैं।

और ऑरेंज गुब्बाडा है व्हाइट गुब्बाडा है और हरा गुब्बाडा है।

बिल्डिंगे भी यहां पे नीचे वाल में है बहुत सारी जो फोटो में नहीं आ पाई हैं।

अंदर सामने दीवाल नजर आ रही है वाइट कलर में और रेड कलर में।

और दो बड़े बड़े टैंक माइन रखे हुए हैं टैंकर जिसको बोलते हैं बम बारूद निकलते आर्मी के पास रहता है।

एक बैग नजर आ रहा उसके बगल में आदमी बैठा हुआ ट्रेन पटरी है।

एक बीच में कुछ सामान रखा मंदिर टाइप का जिसमें गोल्डन कलर का ऊपर वॉल छत है।

एक बलफ नजर आ रहा है ये लड़का व्हाइट शर्ट पहने हुए खड़ा हुआ है यहां--

और साड़ी भी इसके अंदर लगी हुई है फर्नीचर पूरे में बना हुआ है बहुत सारा।

ये एक पेट्रोल टंकी है जिसकी छत पूरी लंबी सी है चौकोर में।

टंकी दो वाइट कलर की है जो मशीन है इसकी पेट्रोल भरने वाली।